ये मस्जिद के तरह प्रतीत हो रहा है बहुत ही सुंदर और अच्छा दृश्य है।

बहुत ही सुन्दर और अच्छा दृश्य जो है ।

ये एक हॉस्पिटल का दृश्य है एक नर्स और डॉक्टर ग्रीन कलर का ड्रेस में खड़ा हुआ है।